और जिसका रंग सफेद दिखाई दे रहा है और लकड़ी का बेड भी है।

और यहां पेड़ भी है जिनके पत्ते हरे हैं।

और काले रंग का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है और लाइट भी है।

और एक लड़के के हाथ में कागज दिख रहा है।

लाल रंग की चटाई भी दिखाई दे रही है और लाइट भी है।

और लकड़ी की मेज भी दिखाई दे रही है और एक पोस्टर भी है।

और एक्टिवा दिखाई दे रही है और एक्टिवा का रंग सफेद है।

और हाथ में घड़ी भी दिखाई दे रही है।

और इस दुकान में कताबा भी दिख रही हैं और हाथ में एक उंठी भी दिखाई दे रही है।

मस्जिद का रंग सफेद हरा है।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

एक लकड़ी की मेज भी दिखाई दे रही है।

और एक शीशे का गेट भी दिखाई दे रहा है।